सामने तार गए हैं बिजली के जो की ब्लैक कलर का दिख रहा है।

सामने बहोत सारे कुर्सी दिख रहे हैं जो की ब्लैक कलर का है।

फूल का कलर रेड है पीछे एक बिजली का खंबा है जो की सफेद कलर का है।

पीछे एक दीवाल है जो कि हरा कलर का दिख रहा।

सामने एक गार्डन का दृश्य है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो की हरा भरा है।

सामने स्टील के पाइप लगे हुए हैं दीवाल का कलर सफेद एंड रेड है।

सामने एक घर का दृश्य है घर का कलर सफेद है।

और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो की हरे भरे हैं।

सामने एक बड़ासा पेड़ है जिसके नीचे एक चबूतरा है चबूतरा का कलर नीला है।

टेबल के ऊपर बहुत सारे सामान रखे हुए और एक कैंची भी है कैंची का कलर पीला है।

सामने बहुत सारे आदमी दिख रहे है और एक औरत भी है जो कि सफेद कलर का कपड़ा पहनी है।

दीवाल का कलर इसका सफेद है।

सामने एक पंडाल बनाया गया है पंडाल का कलर रेड एंड ब्ल्यू है।

सामने एक पोस्टर लगा हुआ है जो की ब्लैक कलर का है।

यह एक हरा भरा दृश्य है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

सामने चार औरत दिख रही है।

सामने एक आदमी है जो की सफेद कलर का शर्ट पहना हुआ है।